यह खाना है जो इंशान द्वारा और जानवर द्वारा खाया जाता है जो काफी स्वादिष्ट है|

यह हमारे सनातन धर्म के--

बहुत ही बहुत ही अच्छा हैं।

बहुत ही बड़ा विद्यालय है यहां काफी सारे बच्चे पढ़ते होंगे जो उस के भविष्य के लिए उज्वल कामनाएं मैं बहुत ही शिक्षित बनाते होंगे।

यहा सब फोटो खिचा रहा हैं।

जहां पे भगवान शिव जी का मूर्ति लगाया हुआ हैं।